इस तस्वीर में एक दुकान नजर आ रही हैं जिसमे एक व्यक्ति आते हुए नज़र--

बहुत सारे पंखे नजर आ रहे है बोहोत सारी खिड़की नजर आ रही है टाइल्स नजर आ रहे है वातावरण एकदम शांत लग रहा है परछाई अंदर आ रही है ऊपर का पूसटाई सीलिंग नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे बहुत सारी मूर्तिया नजर आ रही है नजर आ रहे है चाँदी का एक फूल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में व्यक्ति रुमाल बांधकर खड़ा हुआ नजर आ रहा हैं बहोत सारे कपडे जुते नजर आ रहे हैं।

कांच नजर आ रही हैं। लकड़ी के कुछ बने रैक नजर आ रहे हैं। नो-डिस्काउंट बोर्ड नजर आ रहा हैं।